ये एक ट्रांसफार्मर की फोटो है जिसके बैकग्राउंड में हमे एक बस जाती हुई दिख रही है काफी सारे तार उधर से निकल रहें हैं और शायद कोई गाँव ग्रामीण इलाका है।

ये कोई बस स्टॉप है कई सारी बसिस वहां पे खड़ी हुई दिख रही है। एरिया पूरा खाली है मतलब यहाँ पे कोई आता जाता इस टाइम पे तो नहीं है जो फोटो खींच रहा है या फिर उसने काफी दूर से फोटो खींची है।

का एकदम क्लियर है आ बिजली की तारें हमें दिख रही हैं और सभी बसे लाइन में खड़ी हैं।